जो लड़कियों के लिए है यहां मस्त सूट यहां सूट दिख रही है साड़ी भी दिख रही हैं अच्छा अच्छा --

यह एक सिटी मॉल है।

और कुछ त्यौहार का जैसे लग रहा है ये --

लाइटे मस्त लगी हुई है अ यल्लो और रेड का कॉम्बिनेशन मस्त लगा हुआ है खुर्शी टेबल मस्त सजाई गई है।

कुछ टाइल्से भी लगाई गई है जो ईंट की तरह रहते हैं।

यहां एक घर निर्माण हो रहा है जिसमें अभी तक ईंटें रची गई हैं और --

यह एक ऑटो रिक्शा का गैंग है और यहां पर एक दो तीन च पा आठ --

पेड़-पौधा भी दिख रहा है हरियाली भी है मस्त सुन्दर--

खीरा का आँखों में लगाया हुआ है और एक आदमी फोटो खींच रहा है और --

इसको दिखा रहा है और शैम्पू वगेरा रखा गया है मोबाइल भी रखा गया है और कुर्सी में मस्त बैठा हुआ है आराम से--

बल्ब दार एवं फूलों से सजाया हुआ है गुब्बारों से सजाया हुआ है।

यहाँ दौड़ने के लिए जिम वाला है और ये बलरामपुर का है जैसे लग रहा है क्योंकि हमलोग बलरामपुर गए थे तब एक जिम देखे थे।

मतलब कि यहां गर्ल्सों का --

दुकान है जहाँं सारी चीजें उपलब्ध होती है।

और लोग बाग मस्त फोटो खींचा रहै हैं अंदर --

बहोत से भी बहोत बड़ा गुफा है।

बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही है मस्त सुंदर नजर आती है।

इसका नाम कु कु रख दिया है और मस्त--